लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अंडे रखे हुए हैं।

और कुछ डब्बे है जो कि टाफियों के है उसके राइट हैंड साइड में हम देख सकते है--

चार से पांच है इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में बांस की लकड़ियां भी मौजूद--

एक अंकल लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हैं और राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं एक लेडिस है साथ में उसके एक बच्चा भी है।

बच्चे अपने आनंद ले रहें हैं बहोत ही मजा यहाँ पे लुफ्त उठा रहें हैं।

और ये मुख्य द्वार जो है इसके आगे दो कारपेट गिरे हुए हैं।

इसके ऊपर पीले रंग की टंकी भी नजर आ रही है।

और राइट हैंड साइड में आगे की तरफ से एक टेंपो आ रहा है।

बच्चों ने हाउस ड्रेस पहना हुआ है।

उसके साथ में बहोत सारी बिल्डिंग भी है।

जो जमीन पर है किसके साथ हम देख सकते--

एक औरत जो है बैठी हुई दाहिने और की तरफ देखते हुए नजर आ रही--

इस दृश्य में हम देख सकते हैं जैसा कि यहां पर एक लहंगा--